इ स्कूल का वरांडा है यह वरांडा काफी बड़ा है इस वरांडे पर टेबल एवं कुर्सी लगाया गया है।

यहाँ पर माँ अम्बिका के पूजा करने बहुत से भक्त आते हैं इस मंदिर के किनारे एक दुकान है ये दुकान में झंडी चुनरी तरह-तरह के सामान बेचे जाते हैं ।

एक नदी है यह नदी काफी बड़ी है इस नदी में बहुत से पानी है इस नदी का पानी से बिजली भी उत्पन्न किया जाता है इस नदी में बहुत सारे मछली भी है।

ये दुकान में तरह-तरह के फेस वाश भी है यहाँ पर फेस वाश भी होता है।

बहुत से कंकड़ बहुत से सीमेंट रखे हुए यह मिस्त्री कम कर रहे है। यह मिस्त्री धलाई का कम कर रहे है।

सब्जी की दुकान है यहाँ पर तरह तरह के सब्जी रखे गये है यहाँ सब्जी को सजा के रखा गया है।

एक में बी.ओ.आई. ए.टी.एम. लिखा हुआ है यहाँ पर ए बी.ओ.आई. का ए.टी.एम. है यह ए.टी.एम. से पैसे की निकासी होती --

यहाँ पर पासबुक को प्रिंट किया जाता है यहाँ पे अनेक सारे आदमी है ये पासबुक लेकर यहाँ प्रिंट करवाने आए हुए है यहाँ पर एक पुलिस भी है।

रेस्ट्रोरेंट है यह रेस्ट्रोरेंट काफी बड़ा है इस रेस्ट्रोरेंट को सफ़ेद कलर से पेंट किया गया है।

यहाँ पर काफी सुन्द-स्वादिष्ट खाना --